ये दुकान मे सी.सी.टी.वी कैमरे भी है ।

खाने के समान भी है।

यह जगह एक पार्क जैसा लग रहा है यहाँ पे बहुत से छोटे-छोटे पेड़ भी लगाये गए हैं।

यह एक साइकिल की दुकान है। यह साइकिल की दुकान में नई-नई साइकिल मिलती है। यहाँ पर सिर्फ रेंजर साइकिल ही मिलती है।